साथ ही में बिजली की कुछ तारे दिख रही हैं और --

और पड़ा हुआ है और उसके ऊपर नीले रंग की चद्दर बिछाई हुई है दीवारों का कलर सफेद है तथा फर्स पर भी सफेद टीईलस हैं।

कुछ लोग खड़े हुए हैं और मंच के दोनों तरफ भी लोग हैं कुर्सियों पर भी कुछ लोग --

स्टेशनरी की दुकान है जिसमें कि एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है और इसमें चारों ही तरफ में किताबें और कॉपियाँ लगी हुई हैं।

और नीचे जमीन पर काफी रेत पड़ी हुई है।

इस दुकान में काफी फास्ट फूड भी है।

पर्ची ले के खड़े नजर आ रहे हैं।

व्यायाम वार्म करने का एक बहुत उपउक्त साधन है जिससे कि हमारे शरीर में --

दूध में दिख रही है एक इमारत और उसके साथ कुछ पेड़ मिट्टी भी है और साहती में सड़क पर सूखे पत्ते --

साथ ही में एक स्तंभ है जिस पर कि एक --